हॉस्पिटल के ऊपर दीवार के ऊपर एक बड़ा --

और उसके पीछे एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही है इसके।

यहां पे लोग अंदर जा रहे हैं।

और इधर दोनों लड़के एन्जॉय कर रहे पानी में यहाँ।

जो हर एक के हाथ में झंडा फ्लैग है जिसे भारत माता बने हुए हैं।

और इस ये स्कूल में फंक्शन हो रहा है स्कूल का नाम राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल है।

ये लुक बहोत अच्छा लग रहा--

जो शायद ए अ ओ उस स अ दुकान पे मेरी क्रिसमस लिख।

अं लोग अभी जा रहे हैं चल रहे हैं।

इधर राइट साइड में कुछ पालिका बाजार गेट नंबर ।

तभी सफेद ग्लव्स अ सफेद कपड़े पहन के हैं।

पैरेंट बैठ के हैं उनके कुछ रिलेटिव्स है।

छवि में रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

हर एक बच्चा उम्म डिफरेंट डिफरेंट कलर के कपडे पहन के है ।